आसपास दो बाइक खड़ी हुई है यहां पर एक दुकान भी है पास में।

यहाँ पे बोहोत सी लाइट्स लगी हैं यहां पे एक लाल रंग की कुर्सी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

आसपास बहुत से पेड़ लगे हुए हैं कुछ पेड़ सुखे हैं।

यहां पर बहुत सी गिट्टियां पड़ी हुई है आसपास छोटी छोटी घास उगी हुई है।

बहुत कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है पास में दो पेड़ लगे है जो काफी बड़े है।

बिल्डिंग काफी बड़ी है बिल्डिंग के बाहर एक खंभा है इसपे बहोत से तार लगे हैं।